यह एस_बी_आई बैंक है जिसमे--

यह एक महल के तरह दिख रहा है जो पूरा ग्रीन है ग्रीन कलर से पुता हुआ है आखरी साल दिख रहे है।

इसमें कुछ भी सव्दिस्ट है मीठा है नास्ता कर सकते है बहुत सारे--